हई स्विमिंग पूल बनावल बा तीन ठे। ए ठे लाल ए ठे उज्जर पीला रंगल बा हरा रंगल बा। ए ठे अलगा गुलाबी रंगल बा ए ठे नीला हरा उज्जर रंगल बा।

कर बगलिया पोल गाड़ल बा पोलवा पे बल्फ लटकावल बा आइसा जे पेड़ बा निचवा खंझार वांझर भी बा।

उबड़ खाबड़ पहाडवा बा पहाडवा काला बा हाय एक पेड़ है एक ठं डंडा गडल बा।